यहां पे एक रेड कलर का छोटा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसका सामने एक ढला हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है।

उसका पास एक अ गली का बेहरा दिखाई दे रहा हैं यहां पे कुछ एक आदमी एक औरत जा रहा है।

यहां पे छः सिलेंडर दिखाई दे रहे गैस का रेड कलर का बड़ा बड़ा लंबा लंबा सिलेंडर दिखाई दे रहा है इसका पीछे कुछ ब्रैकेट में--

ये एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है यहां पे बेंच टेबल में अह सब लड़का लड़की लोग बैठा है यूनिफार्म पहन के।

यहां पे एक तब्बू दिखाई दे रहा है टीन का टेंट दिखाई दे रहा है उसका गेट पूरा सजा के रखा हुआ है।

साइड वॉल व्हाइट कलर का है पास में बड़ा बड़ा हरा पत्ता का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ासा व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं।

ये एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है छोटा सा नीचे सामने में थोड़ा गाड़ी का सामने वाला जावा दिखाई दे रहा है वाइट कलर का है।

गले में माला पेहन के खड़ा हुआ है सामने केबिन में रखा है।

में दो अह कम्बन रखा हुआ है माथे ने दो गालिस व्हाइट कलर का पिलो दिखाई दे रहा है।

ये टेलीफोन शॉप है यहां पे बाहर में दो बंदा नहा दे के खड़ा है।

यहां पे रजस्थानी लोग का स्टैचू ये लोग बैठा है राजस्थानी ड्रेस पहन कर--

पीछे एक बंदा एक ब्लैक कलर का बाइक चला के जा रहा है।

वो गार्जियन लग रहे हैं स्टूडेंट लोगों का पास में थोड़ा सा जगहां से मैदान घर का हुआ--

यहां पे पर्सनल के सामने एक औरत यहां पे माईक में लेक्चर दे रहा है।

यह टेलीकॉम शॉप है। जहां पे आइडिया का लगा हुआ है।

के पीछे एक में कर्टेन है पर्पल कलर का यहां सामने एक कुर्सी दिखाई दे रहा है मैरून कलर का --